फ्रूट के और बरगद के आम के निम् के फ्रूट के बरगद के। आम के निम् के फ्रूट के --

ये मुरादे पूरी करने आते है।

होटल जैसा यहाँ शटर ल --

ई हैं यहाँ पे झाड़ू भी है और यहाँ पे देख सकते हैं रस्सी है और ये बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दुकानें हैं बगल में एक दुकान है एक।

और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुन्दर बनाया हुआ है साफ़ सुथरा रखा हुआ है। छोटे-मोटे कच्चे दुकान बनायें हुए हैं।